यहाँ पे कार रिपेरिंग होती है और यहाँ पे जौन किए वर्कर वो कार रिपेरिंग करने के लिए आये है और ये कार है।

और ये गैरेज के जो है वो काफी पुरानी है कच्ची गैरेज है और यहाँ पे गैरे टोटो जो है वो रेड --

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ की ये काफ़ी सुनसान एरिया है और काफी बड़ी-सी है यह जो खाली पड़ी हुई है और यहाँ पे --

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ की एक कैफ़े है और ये कैफ़े जो है काफ़ी सुन्दर है इसमें काफ़ी सारे लाइट्स लगाए गए है।

और मोबाइल की शॉप भी है और यहाँ पे एक मार्केट है। मार्केट में काफ़ी भीड़ है। काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ और साइकिल भी लगी हुई है।

यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये एक जिम है और जिम में काफ़ी सारी चीज़ें है एक्सरसाइज की और यहाँ की फ्लोर कलरफूल फ्लोर है। ब्लैक और रेड कलर में है।

और तीन लोग है जिसमें की एक तीनो आदमी खड़े हैं ।

दो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है। कॉलेज की जो गेट है वो काफी बड़ी है और गेट पे एक पेड़ लगी हुई है वो भी काफी बड़ी पेड़ है और ये पीपल के पेड़ है।

एयरटेल की भी शॉप भी है जो की बैनर दिखाई पड़ रहा है एक लड़का दिखाई पड़ रहा है जिसने ब्लैक कलर की बैग लिया ग टांगी हुई है उसके हाथ में कुछ बुक्स हैं।